यह ब्रिज भोत ही बड़ा और लंबा दिखाई दे रहा और वेह ब्रिज --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है इस कमरे के अंदर एक लोग खडे दिखाई दे रहे है।

यह सर्विस सेंटर एक कार की वाशिंग सेंटर है और इसमें एक सफ़ेद रंग की कार को धोया जा रहाय।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है इस खेल के मैदान में कई सारे बच्चे --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक दूकान दिखाई दे रहा यह दूकान एक बुक स्टोर है।

और यह दूकान का नाम गोपी बुक डिपो है जिसमें कई सारे--

यह रेल ब्रिज बिलकुल लोहे की बनी हुई है और इस रे रेल ब्रिज बहुत ही बडा दिखाई दे रहाय।

सिने जो सिनेमा है और इसके नीचे कई सारे लोग खडे दिखाई दे रहे है।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

यहा एक चित्र और इस चित्र में एक --

और इसके चारो ओर इसे लोहे से बेरिकेडिंग किया गया--

लाल रंग की धागे से स्टील बनाया गया है और इसे बेरिकेडिंग किया गया है।

इसके नीचे एक बोर्ड लगी हुई है और उसपे विद्या इंस्टिट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है।

इस जंगल में चारो ओर सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे --